और यह बैंक बहौत ही बड़ा है। इस बैंक में बहौत सारे लोग आते हैं खाता खुलवाने के लिए।

पहले से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इस फील्ड में शाम को बहुत सारे बच्चे लोग खेलने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे तरह तरह के --

वह पेड़ फूल का पेड़ है और पेड़ हमें लगना चाहिए क्यूकि पेड़ से हमें वायु मिलता है। शुद्ध वायु मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ से बोहोत प्रकार की सुवि --

यह एक पहाड़ का फोटो दिखाया गया है।